पहने हुए दिखाई हुए गोड़ में चप्पल भी पहने हुए वहाँ सीढ़ी भी काली कलर की दिख रही है वहाँ पे पोस्टर पे कुछ बहुत सारा लखा हुआ दिखाई दे रहा है अच्छा नज़ारा देखने को न मिल रहा है वहाँ शटर भी कुछ पेंटिंग दिखाई दे रही है वहाँ दुकान कराने के लिए गयी है वहाँ बुके भी रखी हुई दिखाई दे अच्छी है।

और वो बच्चे दिख रहे हैं बच्चे ब बच्चे बहुत सरे बच्चे एक चेयर पर दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं जहाँ बहुत सारी पोस्टर भी रखे हुए हैं पकोड़े बनाने की कड़ाई भी रखी हुई हैं साइड में टंकी भी रखी हुई हैं।